यह एक नदी का दृश्य है यहां पे बहुत सारे लोग नदी में नहा रहे हैं।

बहुत ही खूबसूरत सा मैरिज हॉल डेकोरेशन हुआ है।

यह एक बाहर का दृश्य है यहां पे बहुत ही बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है।

यह एक आइसक्रीम का साप है।

यहां पे बहुत ही बड़ा सा गार्डन है जिसमें बहुत पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे कुछ व्यक्ति किताब लेने के लिए खड़े हैं।

यह एक पार्क का दृश्य है।

यह एक गिफ्ट कॉर्नर का दृश्य है।

और यहां पे एक व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

यह एक एच_डी_एफ_सी बैंक का दृश्य है जो कि ए_टी_म है।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

हरे घने पेड़ है बड़े बड़े और छोटे भी हैं।

यह एक क्लास रूम का दृश्य है जो कि यहां पर लाइब्रेरी जैसा दिख रहा है।